मॉडिफाइंग ए फॉर्म के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एक फॉर्म में डेटा प्रविष्ट करें फॉर्म में बदलाव करें
पिछले ट्यूटोरियल में हमने लिबरऑफिस बेस का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म बनाना सीखा था
हमने अपने उदाहरण लाइब्रेरी डेटाबेस में एक सरल बुक्स दाता एंट्री फॉर्म बनाया था
चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बुक्स सूची में डेटा प्रविष्ट करते हैं
चलिए सबसे पहले लिब्रियोफिस बसे प्रोग्राम शुरू करते हैं यदि वह पहले से नहीं खुला है
और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं
यदि बेस पहले से ही खुला है तो हम फाइल मेन्यू के अंदर ओपन पर क्लिक करके लाइब्रेरी डेटाबेस खोल सकते हैं
या इसे फाइल मेन्यू के अंदर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके खोल सकते हैं
अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं
चलिए बाएँ पैनेल पर डेटाबेस सूची में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं
ध्यान दीजिये कि फॉर्म्स के भीतर इस विंडो में बुक्स दाता एंट्री फॉर्म चिह्नांकित हो गया है
चलिए इस फॉर्म नाम पर दायाँ क्लिक करते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं
अब हम बुक्स सूची के फील्ड्स के समरूप लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ नीले बैकग्राउंड के साथ एक नई विंडो देखते हैं
चलिए प्रत्येक फील्ड में जाने के लिए tab बटन पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम अंतिम में जाते हैं बेस अगला रिकॉर्ड खोलता है
इस तरह से हम रेकॉर्ड्स का पारगमन कर सकते हैं
या रेकॉर्ड्स के बीच जाने के लिए हम टूलबार में नीचे काले त्रिकोण आइकंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं
वैकल्पिक रूप से एक विशिष्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए टूलबार के नीचे रिकॉर्ड संख्या टाइप करिये और enter बटन या tab बटन दबाइए
चलिए अंतिम रिकॉर्ड पर चलते हैं जोकि पाँचवा है
अब चलिए एक नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं
यह करने के लिए न्यू रेकॉर्ड आइकन पर क्लिक करिये जोकि टूलबार के नीचे अंतिम रिकॉर्ड आइकन से दूसरा दायाँ है
घ्यान दीजिये कि हम खाली टेक्स्ट बॉक्सेस और नीचे रिकॉर्ड संख्या देखते हैं जोकि 6 है
अब हम एक नया रिकॉर्ड एक नई पुस्तक कि सूचना के साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं
टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में पैराडाइज लोस्ट टाइप करते हैं और अगली फ़ील्ड पर जाने के लिए tab बटन का इस्तेमाल करते हैं
ऑथर के सामने जॉन मिल्टन टाइप करते हैं
पब्लिश्यर के सामने 1975 टाइप करते हैं
पब्लिशर के सामने आक्सफोर्ड और प्राइस के सामने 200 यहाँ हमने अभी बुक्स टेबल में बुक्स दाता एंट्री फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक नया रिकॉर्ड प्रविष्ट किया
हम इस विंडो को बंद करते हैं
इस प्रकार से हम और रेकॉर्ड्स या डेटा जोड़ सकते हैं
चलिए देखते हैं कि यदि बसे नें अंतिम रिकॉर्ड के साथ बुक्स टेबल में सुधार किया है या नहीं जिसे हमने अभी प्रविष्ट किया है
इसके लिए लिबरऑफिस बेस मुख्य विंडो में चलिए दायें पैनेल में बुक्स टेबल पर डबल क्लिक करते हैं
नये रिकॉर्ड जिसे हमने फॉर्म के जरिये यहाँ प्रविष्ट किया था उसपर ध्यान दीजिये
ठीक है हम इस विंडो को अब बंद करेंगे
अब चलिए सीखते हैं कि कैसे अपने फॉर्म में सरल सुधार करें
हम बाएँ पैनेल पर डेटाबेस सूची में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करेंगे
और इस पर दायाँ क्लिक करके और एडिट चुनकर बदलाव करने के लिए बुक्स दाता एंट्री फॉर्म खोलेंगे
अब एक परिचित विंडो खुलती है
इसके अलावा यदि आप लेबल टाइटल पर क्लिक करते हैं तो आप लेबल और टेक्स्ट बॉक्स को घेरे हुए कई सारे छोटे हरे बॉक्स देखेंगे
इसका मतलब है कि डिजाइन विंडो फॉर्म में है
और हम फॉर्म का रूप और उसके एलीमेंट्स और साथ ही उसकी कार्यत्मकता बदल सकते हैं
उदाहरणस्वरुप हम लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस का स्थान और आकर बदल सकते हैं
इन्हें प्रॉपर्टीज भी कहते हैं
लेबल टाइटल पर डबल क्लिक करिये
यह प्रॉपर्टीज नामक एक छोटा पॉपअप विंडो खोलता है
यहाँ अनेक प्रकार के एलीमेंट्स पर ध्यान दीजिये
अब चलिए लेबल ऑथर पर क्लिक करते हैं ध्यान दीजिये कि प्रॉपर्टीज विंडो रिफ्रेश होती है और लेबल ऑथर की विशेषता दर्शाती हैं
अतः हम जैसे ही हम फॉर्म पर विभिन्न एलीमेंट्स पर क्लिक करते हैं हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज विंडो चुनित एलीमेंट की विशेषता को दर्शाने के लिए रिफ्रेश होती है
अब प्रॉपर्टीज विंडो टाइटल प्रॉपर्टीज मल्टीसिलेक्शन की तरह से पढता है
ऐसा इसलिए क्योंकि हम देख सकते है कि ऑथर लेबल और उसका टेक्स्टबॉक्स इसके बगल में ही है हरे बॉक्सेस के एक समूह में रखे गये हैं
बसे ने लेबल्स को स्वतः ही लेबल्स और उसके उनुरूप टेक्स्टबॉक्सेस को फॉर्म में समूहीकृत कर दिया है
हम इसे असमूहीकृत कर सकते हैं
टाइटल लेबल पर दायाँ क्लिक करिये और फिर नीचे ग्रुप पर क्लिक करिये फिर अनग्रुप पर क्लिक करिये
अब हम देखते हैं कि लेबल टाइटल और उनके टेक्स्ट बॉक्स असमूहीकृत हो गये हैं
इस प्रकार से हम फॉर्म में विशिष्ट एलीमेंट्स की विशेषताओं में बदलाव कर सकते हैं
अगला चलिए टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में एक टूल टिप जोड़ते हैं
अब चलिए प्रॉपर्टीज विंडो में नीचे तक स्क्रोल करते हैं
लेबल हेल्प टेक्स्ट पर ध्यान दीजिये और यहाँ चलिए टाइप करते हैं Enter थे टाइटल ओएफ थे बुक हेरे अब सबसे ऊपर फाइल मेन्यु के नीचे सेव आइकन पर क्लिक करके फॉर्म सेव करते हैं
और हम इस विंडो को बंद करेंगे
अब देखते हैं हमारा फॉर्म हमारे किये गये बदलावों के बाद कैसा दिखता है
इसके लिए बसे मुख्य विंडो में जाते हैं बाएँ पैनेल में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करिये
और दायें पैनेल में बुक्स दाता एंट्री फॉर्म पर डबल क्लिक करिये
माउस को टाइटल लेबल या टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर दर्शाते हैं
ध्यान दीजिये कि एक टूल टिप दिखेगी जो कहेगी Enter थे टाइटल ओएफ थे बुक हेरे
अतः अब हमने सीखा कि कैसे अपने फॉर्म में सरल बदलाव करें
हम बसे ट्यूटोरियल के अगले भाग में देखंगे कि कैसे एक फॉर्म में अधिक बदलाव करें
यहाँ पर एक नियत कार्य है
मेंबर्स टेबल के लिए एक साधारण फॉर्म बनाइए
अब हम लिबरऑफिस बेस में फॉर्म में बदलावों पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने सीखा कि कैसे फॉर्म में डेटा प्रविष्ट करें और कैसे फॉर्म में बदलाव करें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा हैयह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद